लाइब्रेरी है और यहाँ बहुत सारे किताबें हैं यहाँ बच्चों के लिए स्कूल के द्वारा की जाती है व्यवस्था जिस बच्चों के जो --

और यहाँ से बच्चे किताब लेकर अपने घर ले जाते हैं और --

शिंगार के दुकान भी है कपड़ा का दुकान है बहुत अच्छा मजार लग रहा बहुत बड़ा है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सुंदर है भव्य है।